चित्र में एक खेत है खेत में धान बोए गए है।

और छोटे छोटे लताएं लगी गई है बाउंड्री के ऊपर--

हॉस्पिटल के बाहर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है और छोटे छोटे दुकान भी लगी हुई है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा हॉल है जिसमें पूरे जिम के समान रखे गए हैं एक्सरसाइज की मशीन रखी गई है।

और छोटा सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें हरे हरे घास उगे हैं।

और पीछे में परदे लगे हुए हैं।

दीवाल में बहोत सारे रंग बिरंगे बैलून टंगे हुए हैं।

जहाँ एक टुरी ला अवार्ड ल देवत हे और टेबल म फाइल्स लैपटॉप और बहुत सारे --

और इसमें बहुत सारे लोग कसरत कर रहे हैं जिम के मशीन में रखे गए हैं दीवाल पर ए_सी लगी हुई है।

इस चित्र के अंदर एक कांच का गेट लगा हुआ है और कांच के गेट के अंदर--

जो घर बना रे है लेबर लोग सीमेंट का लेप लगा रहे है।

और नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी है।

और ऊपर मां बड़े जाने ए_सी यहां चलत है।

और बिजली की तार दिखाई दे रही है।

अह गार्डन बनी हुई है और पेड़ भी लगे हुए हैं और रेती का ढेर दिखाई दे रहा है।